दो माला दिख रही है जो येलो कलर की हैं।

यहां हमें एक मोर दिख रहा है।

उसके पास लाल कलर का कुछ रखा हुआ है।

यहां हमें एक पहाड़ दिख रहा है।

यहां हमें एक मूर्ति दिख रही है।

यहां हमें एक ऑरेंज दीवाल दिख रही--

कई लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

ग्राउंड में घास नजर आ रही है झाड़ नजर आ रहे हैं।

जिम का पिक दिख रहा है।

उस पर कायस्थ धरमशाला लिखा हुआ--

बोहोत सारे कॉम्प्युटर रखें हुए दिख रहें हैं और बहोत स्टूडंट कुर्सी पर --

पानी की बॉटल दिख रही है पंखा और लाइट भी दिख रहे हैं।

यहाँ हमें एक घर दिख रहा है।

और एक लाल कलर का बोर्ड लिखा हुआ--

एक नदी दिख रही है सीढ़ी भी नज़र आ रही है।

यहां हमें बहोत सारी गेम दिख रही है।

लाल और ओरेंज कलर की दीवाल और छत दिख रही है।

ट्रक और कार नजर आ रही है।

यहां हमे कई स्तंभ दिख रहे--

ऊपर ऑरेंज पंखा दिख रहा है।

अमूल मस्ती दही अमूल कूल दूध--